और एक आसमान भी दिखाई दे रहा है जिसका रंग नीला दिखाई दे रहा है|

सफ़ेद और काला दिखाई दे रहा है। वही एक स्कूटी भी खड़ी हुई है। उसका रंग भी काला दिखाई दे रहा है।

काला दिखाई दे रहा है। वही टेबल भी रखी हुई है। जिनका रंग --

और आस-पास पर कुछ पेड़-पौधे लगे हुए है और पेड-पौधों का रंग --

यहाँ एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क --

है और पेड़ का रंग हरा दिखाई दे रहा है। वही आसमान का रंग भी दिखाई दे रहा है जो नीला है।

और वही एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने --

जिसने काले रंग का पैंट और काले रंग का बैग टांगा हुआ है और --

और पेड़ पौधे लगे हुए हैं। पेड़ पौधों का रंग का--

पेड़ पौधा लगे हुए हैं। पेड़ पौधों का रंग हरा है और वहीं --

एक बाल्टी रखी हुई है। बाल्टी का रंग नीला है और वहाँ सब्जियाँ भी रखी हैं।

यहाँ एक गार्डन है। गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों ने सफ़ेद रंग और काले रंग का पैन्ट पहना है और वहीं एक बैनर --

पेड पौधो का रंग हरा है। और आसमान दिख रहा है ।

यहाँ एक ईमारत है। ईमारत का रंग सफ़ेद और हरा है और कुछ पेड़-पौधे लगे हुए हैं। पेड़-पौधो का रंग हरा है और आसमान दिख रहा है। आसमान का रंग सफ़ेद है।

अम् सड़क का रंग काला दिख रहा है और वहीं सीढ़ी है। सीढ़ी का रंग सफ़ेद और काला दिखाई दे रहा है।

सफ़ेद और हरा है और वहीं एक टावर लगी हुई है। टावर का रंग सफ़ेद है और आसमान दिखाई दे रहा है।

इसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है और आसमान --